उप्पर के तरफ इसमें सेंट्रिंग लगी हुवी है। इसके निचे जमीन पर सीमेंट ग्रेनाइट रति इत्यादि पड़े हुवे है। सामने के तरफ इसमें पाइप भी पड़े हुवे है।

में एक व्यक्ति चौर पर भी बैठा हुआ हैं।

पीछे बास्केट लगी हुई है। पीछे बहुत दुकान सारे भी नजर आ रही है। जो गेंदे की फूलों की भी है। इसमें यहाँ पर माला बानी जाती है।

एक बड़ा सा नदी है सामने की तरफ एक बड़ा सा पानी भड़ा हुआ है इसमे बहुत सारा गिट्टी रेताएं और सामने की तरफ इसमे स्टोन पड़े हुए है इसमे ग्रीन कलर की ग्राससेज भी लगी हुई है कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए है।